मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार
आज वो दिन आ ही गया जिसका हम सभी फरवरी से इंतजार कर रहे थे
मैं 'मन की बात' के माध्यम से एक बार फिर आपके बीच अपने परिवारजनों के बीच आया हूँ
एक बड़ी प्यारी सी उक्ति है - 'इति विदा पुनर्मिलनाय' इसका अर्थ भी उतना ही प्यारा है मैं विदा लेता हूँ फिर मिलने के लिए
इसी भाव से मैंने फरवरी में आपसे कहा था कि चुनाव नतीजों के बाद फिर मिलूँगा और आज 'मन की बात' के साथ मैं आपके बीच फिर हाजिर हूँ
उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे घर में सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा और अब तो मानसून भी आ गया है और जब मानसून आता है तो मन भी आनंदित हो जाता है
आज से फिर एक बार हम 'मन की बात' में ऐसे देशवासियों की चर्चा करेंगे जो अपने कामों से समाज में देश में बदलाव ला रहे हैं
हम चर्चा करेंगे हमारी समृद्ध संस्कृति की गौरवशाली इतिहास की और विकसित भारत के प्रयास की
साथियो फरवरी से लेकर अब तक जब भी महीने का आखिरी रविवार आने को होता था तब मुझे आपसे इस संवाद की बहुत कमी महसूस होती थी
लेकिन मुझे ये देखकर बहुत अच्छा भी लगा कि इन महीनों में आप लोगों ने मुझे लाखों संदेश भेजे
'मन की बात' रेडियो प्रोग्राम भले ही कुछ महीने बंद रहा हो लेकिन 'मन की बात' का जो स्पिरिट है देश में समाज में हर दिन अच्छे काम निस्वार्थ भावना से किए गए काम समाज पर पॉजिटिव असर डालने वाले काम - निरंतर चलते रहे
चुनाव की खबरों के बीच निश्चित रूप से मन को छू जाने वाली ऐसी खबरों पर आपका ध्यान गया होगा
साथियो मैं आज देशवासियों को धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने हमारे संविधान और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर अपना अटूट विश्वास दोहराया है
24 का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था
दुनिया के किसी भी देश में इतना बड़ा चुनाव कभी नहीं हुआ जिसमें 65 करोड़ लोगों ने वोट डाले हैं
मैं चुनाव आयोग और मतदान की प्रक्रिया से जुड़े हर व्यक्ति को इसके लिए बधाई देता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियो आज 30 जून का ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है
इस दिन को हमारे आदिवासी भाई बहन 'हूल दिवस' के रूप में मनाते हैं
यह दिन वीर सिद्धो कान्हू के अदम्य साहस से जुड़ा है जिन्होंने विदेशी शासकों के अत्याचार का पुरजोर विरोध किया था
वीर सिद्धो कान्हू ने हजारों संथाली साथियों को एकजुट करके अंग्रेजों का जी जान से मुकाबला किया और जानते हैं ये कब हुआ था ये हुआ था 1855 में यानी ये 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से भी दो साल पहले हुआ था तब झारखंड के संथाल परगना में हमारे आदिवासी भाई बहनों ने विदेशी शासकों के खिलाफ हथियार उठा लिया था
हमारे संथाली भाई बहनों पर अंग्रेजों ने बहुत सारे अत्याचार किए थे उन पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए थे
इस संघर्ष में अद्भुत वीरता दिखाते हुए वीर सिद्धो और कान्हू शहीद हो गए
झारखंड की भूमि के इन अमर सपूतों का बलिदान आज भी देशवासियों को प्रेरित करता है
आइये सुनते हैं संथाली भाषा में इन्हें समर्पित एक गीत का अंश -

मेरे प्यारे साथियो अगर मैं आपसे पूछूँ कि दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता कौन सा होता है तो आप जरूर कहेंगे - "माँ"
हम सबके जीवन में 'माँ' का दर्जा सबसे ऊँचा होता है
माँ हर दुख सहकर भी अपने बच्चे का पालन पोषण करती है
हर माँ अपने बच्चे पर हर स्नेह लुटाती है
जन्मदात्री माँ का ये प्यार हम सब पर एक कर्ज की तरह होता है जिसे कोई चुका नहीं सकता
मैं सोच रहा था हम माँ को कुछ दे तो सकते नहीं लेकिन और कुछ कर सकते हैं क्या इसी सोच में से इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है इस अभियान का नाम है - 'एक पेड़ माँ के नाम'
मैंने भी एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाया है
मैंने सभी देशवासियों से दुनिया के सभी देशों के लोगों से ये अपील की है कि अपनी माँ के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं
और मुझे ये देखकर बहुत खुशी है कि माँ की स्मृति में या उनके सम्मान में पेड़ लगाने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है
लोग अपनी माँ के साथ या फिर उनकी फोटो के साथ पेड़ लगाने की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं
हर कोई अपनी माँ के लिए पेड़ लगा रहा है - चाहे वो अमीर हो या गरीब चाहे वो कामकाजी महिला हो या गृहिणी
इस अभियान ने सबको माँ के प्रति अपना स्नेह जताने का समान अवसर दिया है
वो अपनी तस्वीरों को Plant4Mother और एक पेड़ मां के नाम इसके साथ साझा करके दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं
साथियो इस अभियान का एक और लाभ होगा
धरती भी माँ के समान हमारा ख्याल रखती है
धरती माँ ही हम सबके जीवन का आधार है इसलिए हमारा भी कर्तव्य है कि हम धरती माँ का भी ख्याल रखें
माँ के नाम पेड़ लगाने के अभियान से अपनी माँ का सम्मान तो होगा ही होगा धरती माँ की भी रक्षा होगी
पिछले एक दशक में भारत में सबके प्रयास से वन क्षेत्र का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है
अमृत महोत्सव के दौरान देशभर में 60 हजार से ज्यादा अमृत सरोवर भी बनाए गए हैं
अब हमें ऐसे ही माँ के नाम पर पेड़ लगाने के अभियान को गति देनी है
मेरे प्यारे देशवासियो देश के अलग अलग हिस्सों में मॉनसून तेजी से अपना रंग बिखेर रहा है
और बारिश के इस मौसम में सबके घर में जिस चीज की खोज शुरू हो गई है वो है 'छाता'
'मन की बात' में आज मैं आपको एक खास तरह के छातों के बारे में बताना चाहता हूँ
ये छाते तैयार होते हैं हमारे केरला में
वैसे तो केरला की संस्कृति में छातों का विशेष महत्व है
छाते वहाँ कई परंपराओं और विधि विधान का अहम हिस्सा होते हैं
लेकिन मैं जिस छाते की बात कर रहा हूँ वो हैं 'कार्थुम्बी छाते' और इन्हें तैयार किया जाता है केरला के अट्टापडी में
ये रंग बिरंगे छाते बहुत शानदार होते हैं
और खासियत ये इन छातों को केरला की हमारी आदिवासी बहनें तैयार करती हैं
आज देशभर में इन छातों की मांग बढ़ रही हैं
इनकी ओनलाइन बिक्री भी हो रही है
इन छातों को 'वट्टालक्की सहकारी कृषि सोसाइटी' की देखरेख में बनाया जाता है
इस सोसाइटी का नेतृत्व हमारी नारीशक्ति के पास है
महिलाओं के नेतृत्व में अट्टापडी के आदिवासी समुदाय ने आंत्रप्रिन्योरशिप की अद्भुत मिसाल पेश की है
इस सोसाइटी ने एक बैंबू हैंडीक्राफ्ट यूनिट की भी स्थापना की है
अब ये लोग एक रिटेल आउटलेट और एक पारंपरिक कैफे खोलने की तैयारी में भी हैं
इनका मकसद सिर्फ अपने छाते और अन्य उत्पाद बेचना ही नहीं बल्कि ये अपनी परंपरा अपनी संस्कृति से भी दुनिया को परिचित करा रहे हैं
आज कार्थुम्बी छाते केरला के एक छोटे से गाँव से लेकर मल्टीनेशनल कंपनियों तक का सफर पूरा कर रहे हैं
लोकल के लिए वोकल होने का इससे बेहतरीन उदाहरण और क्या होगा
मेरे प्यारे देशवासियो अगले महीने इस समय तक पेरिस ओलंपिक शुरू हो चुके होंगे
मुझे विश्वास है कि आप सब भी ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने का इंतजार कर रहे होंगे
मैं भारतीय दल को ओलंपिक खेलों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ
हम सबके मन में टोक्यो ओलंपिक की यादें अब भी ताजा हैं
टोक्यो में हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने हर भारतीय का दिल जीत लिया था
टोक्यो ओलंपिक के बाद से ही हमारे एथलीट्स पेरिस ओलंपिक की तैयारियों में जी जान से जुटे हुए थे
सभी खिलाड़ियों को मिला दें तो इन सबने करीब नाइन हंड्रेड - नौ सौ इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया है
ये काफी बड़ी संख्या है
साथियो पेरिस ओलंपिक में आपको कुछ चीजें पहली बार देखने को मिलेंगी
शूटिंग में हमारे खिलाड़ियों की प्रतिभा निखरकर सामने आ रही है
Table Tennis में मेन और वूमेन दोनों टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं
भारतीय शॉटगन टीम में हमारी शूटर बेटियाँ भी शामिल हैं
इस बार कुश्ती और घुड़सवारी में हमारे दल के खिलाड़ी उन कैटेगरीज में भी कॉम्पीट करेंगे जिनमें पहले वे कभी शामिल नहीं रहे
इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार हमें खेलों में अलग लेवेल का रोमांच नजर आएगा
आपको ध्यान होगा कुछ महीने पहले वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस रही है
वहीं चेस और बैडमिंटन में भी हमारे खिलाड़ियों ने परचम लहराया है
अब पूरा देश ये उम्मीद कर रहा है कि हमारे खिलाड़ी ओलंपिकs में भी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे
इन खेलों में मेडल्स भी जीतेंगे और देशवासियों का दिल भी जीतेंगे
आने वाले दिनों में मुझे भारतीय दल से मुलाकात का अवसर भी मिलने वाला है
मैं आपकी तरफ से उनका उत्साहवर्धन करूंगा
और हाँ इस बार हमारा हैशटैग Cheer4Bharat है
इस हैशटैग के जरिए हमें अपने खिलाड़ियों को चीर करना है उनका उत्साह बढ़ाते रहना है
तो मोमेंटम को बनाए रखिए आपका ये मोमेंटमभारत का मैजिक दुनिया को दिखाने में मदद करेगा
मेरे प्यारे देशवासियो मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी ऑडियो क्लिप प्ले कर रहा हूँ

इस रेडियो कार्यक्रम को सुनकर आप भी हैरत में पड़ गए ना तो आइए आपको इसके पीछे की पूरी बात बताते हैं
दरअसल ये कुवैत रेडियो के एक प्रसारण की क्लिप है
अब आप सोचेंगे कि बात हो रही है कुवैत की तो वहाँ हिन्दी कहाँ से आ गई दरअसल कुवैत सरकार ने अपने नेशनल रेडियो पर एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है
और वो भी हिन्दी में
'कुवैत रेडियो' पर हर रविवार को इसका प्रसारण आधे घंटे के लिए किया जाता है
इसमें भारतीय संस्कृति के अलग अलग रंग शामिल होते हैं
हमारी फिल्में और कला जगत से जुड़ी चर्चाएं वहाँ भारतीय समुदाय के बीच बहुत लोकप्रिय हैं
मुझे तो यहाँ तक बताया गया है कि कुवैत के स्थानीय लोग भी इसमें खूब दिलचस्पी ले रहे हैं
मैं कुवैत की सरकार और वहाँ के लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये शानदार पहल की है
साथियो आज दुनियाभर में हमारी संस्कृति का जिस तरह गौरवगान हो रहा है उससे किस भारतीय को खुशी नहीं होगी अब जैसे तुर्कमेनिस्तान में इस साल मई में वहाँ के राष्ट्रीय कवि की 300वीं जन्म जयंती मनाई गई
इस अवसर पर तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति ने दुनिया के 24 प्रसिद्ध कवियों की प्रतिमाओं का अनावरण किया
इनमें से एक प्रतिमा गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी की भी है
ये गुरुदेव का सम्मान है भारत का सम्मान है
इसी तरह जून के महीने में दो कैरेबियाई देश सूरीनाम और सैंट विंसेंट एंड थे ग्रेनेडिन्स ने अपने इंडियन हेरिटेज को पूरे जोश और उत्साह के साथ सेलिब्रेट किया
सूरीनाम में हिन्दुस्तानी समुदाय हर साल 5 जून को इंडियन अराइवल डे और प्रवासी दिन के रूप में मनाता है
यहाँ तो हिन्दी के साथ ही भोजपुरी भी खूब बोली जाती है
सैंट विंसेंट एंड थे ग्रेनेडिन्स में रहने वाले हमारे भारतीय मूल के भाई बहनों की संख्या भी करीब छ हजार है
उन सबको अपनी विरासत पर बहुत गर्व है
एक जून को इन सबने इंडियन अराइवल डे को जिस धूम धाम से मनाया उससे उनकी ये भावना साफ झलकती है
दुनियाभर में भारतीय विरासत और संस्कृति का जब ऐसा विस्तार दिखता है तो हर भारतीय को गर्व होता है
साथियो इस महीने पूरी दुनिया ने 10वें योग दिवस को भरपूर उत्साह और उमंग के साथ मनाया है
मैं भी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित योग कार्यक्रम में शामिल हुआ था
कश्मीर में युवाओं के साथ साथ बहनों-बेटियों ने भी योग दिवस में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया
जैसे जैसे योग दिवस का आयोजन आगे बढ़ रहा है नए नए रेकॉर्ड्स बन रहे हैं
दुनिया भर में योग दिवस ने कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं
सऊदी अरब में पहली बार एक महिला अल हनौफ साद जी ने कॉमन योगा प्रोटोकॉल को लीड किया
ये पहली बार है जब किसी सऊदी महिला ने किसी मैन योगा सेशन को इंस्ट्रक्ट किया हो
ईजिप्ट में इस बार योग दिवस पर एक फोटो कॉम्पिटिशन का आयोजन किया गया
नील नदी के किनारे रेड एसईए के बीचेस पर और पिरामिडों के सामने - योग करते लाखों लोगों की तस्वीरें बहुत लोकप्रिय हुईं
अपने मार्बल बुद्धा स्टेच्यू के लिए प्रसिद्ध म्यानमार का माराविजया पैगोडा कॉम्प्लेक्स दुनिया में मशहूर है
यहाँ भी 21 जून को शानदार योगा सेशन का आयोजन हुआ
बहरीन में दिव्यांग बच्चों के लिए एक स्पेशियल कैम्प का आयोजन किया गया
श्रीलंका में यूनेस्को हेरिटेज सिते के लिए मशहूर गॉल फोर्ट में भी एक यादगार योगा सेशन हुआ
अमेरिका के न्यू यॉर्क में अब्जर्वेशन डेक पर भी लोगों ने योग किया
मार्शल आईएसलैंड्स पर भी पहली बार बड़े स्तर पर हुए योग दिवस के कार्यक्रम में यहाँ के राष्ट्रपति जी ने भी हिस्सा लिया
भूटान के थिंपू में भी एक बड़ा योग दिवस का कार्यक्रम हुआ जिसमें मेरे मित्र प्रधानमंत्री टोबगे भी शामिल हुए
यानी दुनिया के कोने कोने में योग करते लोगों के विहंगम दृश्य हम सबने देखे
मैं योग दिवस में हिस्सा लेने वाले सभी साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ
मेरा आपसे एक पुराना आग्रह भी रहा है
हमें योग को केवल एक दिन का अभ्यास नहीं बनाना है
आप नियमित रूप से योग करें
इससे आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलावों को जरूर महसूस करेंगे
साथियो भारत के कितने ही प्रोडक्ट्स हैं जिनकी दुनिया भर में बहुत डिमांड है और जब हम भारत के किसी लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल होते देखते हैं तो गर्व से भर जाना स्वाभाविक है
ऐसा ही एक प्रोडक्ट है अराकू कॉफी
अराकू कॉफी आंध्र प्रदेश के अल्लुरी सीता राम राजू जिले में बड़ी मात्रा में पैदा होती है
ये अपने रिच फ्लेवर और अरोमा के लिए जानी जाती है
अराकू कॉफी की खेती से करीब डेढ़ लाख आदिवासी परिवार जुड़े हुए हैं
अराकू कॉफी को नई ऊंचाई देने में गिरिजन कोआपरेटिव की बहुत बड़ी भूमिका रही है
इसने यहाँ के किसान भाई बहनों को एक साथ लाने का काम किया और उन्हें अराकू कॉफी की खेती के लिए प्रोत्साहन दिया
इससे इन किसानों की कमाई भी बहुत बढ़ गई है
इसका बहुत लाभ कोंडा डोरा आदिवासी समुदाय को भी मिला है
कमाई के साथ साथ उन्हें सम्मान का जीवन भी मिल रहा है
मुझे याद है एक बार विशाखापत्नम में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू गारु के साथ मुझे इस कॉफी का स्वाद लेने का मौका मिला था
इसके तस्ते की तो पूछिए ही मत कमाल की होती है ये कॉफी अराकू कॉफी को कई ग्लोबल अवार्ड्स मिले हैं
दिल्ली में हुई G 20 समिट में भी कॉफी छाई हुई थी
आपको जब भी अवसर मिले आप भी अराकू कॉफी का आनंद जरूर लें
साथियो लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल बनाने में हमारे जम्मू कश्मीर के लोग भी पीछे नहीं हैं
पिछले महीने जम्मू कश्मीर ने जो कर दिखाया है वो देशभर के लोगों के लिए भी एक मिसाल है
यहाँ के पुलवामा से स्नो पीईएस की पहली खेप लंदन भेजी गई
कुछ लोगों को ये आईडीईए सूझा कि कश्मीर में उगने वाली एक्सोटिक वेजिटेबल्स को क्यूँ ना दुनिया के नक्शे पर लाया जाए बस फिर क्या था चकूरा गावं के अब्दुल राशीद मीर जी इसके लिए सबसे पहले आगे आए
उन्होंने गावं के अन्य किसानों की जमीन को एक साथ मिलाकर स्नो पीईएस उगाने का काम शुरू किया और देखते ही देखते स्नो पीईएस कश्मीर से लंदन तक पहुँचने लगी
इस सफलता ने जम्मू कश्मीर के लोगों की समृद्धि के लिए नए द्वार खोले हैं
हमारे देश में ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स की कमी नहीं है
आप ऐसे प्रोडक्ट्स को myप्रोडक्ट्सmypride के साथ जरूर शेयर करें
मैं इस विषय पर आने वाले 'मन की बात' में भी चर्चा करूँगा
मम प्रिया देशवासिन
अद्य अहं किञ्चित् चर्चा संस्कृत भाषायां आरभे
आप सोच रहे होंगे कि 'मन की बात' में अचानक संस्कृत में क्यों बोल रहा हूँ इसकी वजह है आज संस्कृत से जुड़ा एक खास अवसर आज 30 जून को आकाशवाणी का संस्कृत बुलेटिन अपने प्रसारण के 50 साल पूरे कर रहा है
50 वर्षों से लगातार इस बुलेटिन ने कितने ही लोगों को संस्कृत से जोड़े रखा है
मैं अल्ल इंडिया रेडियो परिवार को बधाई देता हूँ
साथियो संस्कृत की प्राचीन भारतीय ज्ञान और विज्ञान की प्रगति में बड़ी भूमिका रही है
आज के समय की मांग है कि हम संस्कृत को सम्मान भी दें और उसे अपने दैनिक जीवन से भी जोड़ें
आजकल ऐसा ही एक प्रयास बेंगलुरू में कई और लोग कर रहे हैं
बेंगलुरू में एक पार्क है कब्बन पार्क इस पार्क में यहाँ के लोगों ने एक नई परंपरा शुरू की है
यहाँ हफ्ते में एक दिन हर रविवार बच्चे युवा और बुजुर्ग आपस में संस्कृत में बात करते हैं
इतना ही नहीं यहाँ वाद विवाद के कई सेशन भी संस्कृत में ही आयोजित किए जाते हैं
इनकी इस पहल का नाम है - संस्कृत वीकेंड इसकी शुरुआत एक वेबसाइट के जरिए समष्टि गुब्बी जी ने की है
कुछ दिनों पहले ही शुरू हुआ ये प्रयास बेंगलुरूवासियों के बीच देखते ही देखते काफी लोकप्रिय हो गया है
अगर हम सब इस तरह के प्रयास से जुड़ें तो हमें विश्व की इतनी प्राचीन और वैज्ञानिक भाषा से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा
मेरे प्यारे देशवासियो 'मन की बात' के इस एपिसोड में आपसे जुड़ना बहुत अच्छा रहा
अब ये सिलसिला फिर पहले की तरह चलता रहेगा
अब से एक सप्ताह बाद पवित्र रथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है
मेरी कामना है कि महाप्रभु जगन्नाथ की कृपा सभी देशवासियों पर सदैव बनी रहे
अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो चुकी है और अगले कुछ दिनों में पंढरपुर वारी भी शुरू होने वाली है
मैं इन यात्राओं में शामिल होने वाले सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देता हूँ
आगे कच्छी नववर्ष - आषाढी बीज का त्योहार भी है
इन सभी पर्व त्योहारों के लिए भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं
मुझे विश्वास है कि पॉजिटिविटी से जुड़े जनभागीदारी के ऐसे प्रयासों को आप मेरे साथ अवश्य शेयर करते रहें
मैं अगले महीने आपके साथ फिर से जुडने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ
तब तक आप अपना भी अपने परिवार का ध्यान रखिए
बहुत बहुत धन्यवाद